इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई गई है।

और एक बड़ा सा मंडप दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ परदे लगे हुए हैं जो कि --

सामने तीन पिलर दिख रहे हैं जिनका रंग लाल है।

छोटे कप हैं और कुछ मीडियम कप हैं और कुछ बड़े कप हैं।

इस फोटो में एक कार गैराज दिखाया गया है।

ऊपर एक टीन दिख रही है और एक पिलर दिख रहा है।

सामने कुछ कपड़े और दिखाई दे रहे हैं और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने उपर की तरफ को सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

इसमें कुछ तार और कुछ पाइपें भी दिखाई दे रही हैं।

जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं --

सामने एक रेलिंग भी है।

पास में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

एक लड़का ड्रम बजा रहा है।

इन्होनें लाल और नीले कलर की जैकेट पहनी हुई है।

जो कि किसी तरीके का नक्शा लग रहा है।

उस आदमी ने एक हाफ शर्ट पहनी हुई है।

वह चैन का यूज कर रहा है।

से ऊपरी सतह पर है।

इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई गई है।

और एक बड़ा सा मंडप दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ सीढ़ी रखी हुई है जोकि बहोत छोटी --

इसमें जिम के कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

ऊपर एक झूमर लगा हुआ है।

सामने कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं जो छोटे छोटे पिलरों पे लगी हुई हैं।

इनके पीछे एक इमारत बनी हुई है।

पार्क के पीछे एक दीवार है।

सामने कुछ बॉक्स लगे हुए है जोकि कुछ ऊपर रखे गए है।

सामने सरस्वती माता जी की मूर्ति रखी हुई है उनके नीचे एक पर्दा लगा हुआ है।

नीचे कुछ पोस्टर भी लगा हुआ है पोस्टर पे कुछ--

सामने कुछ अर्जीपुर नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे एक और दिख रहा है।

जो कि वीजा लिखा हुआ है नीचे एक नंबर प्लेट लगी हुई है।